कितना मजा आता होगा यार इस इतने बड़े ग्राउंड में शॉट लगाने में।

पेड़ पौधे भी काफी अच्छी इस --

यहां कितना अच्छा मंडप सजाया यार।

यहाँ पर आरती होती होगी शायद।

हम कही बगीचे में आ गए हो। हरे-हरे पेड़ नारियल के पेड़ कितने ऊच्चे-ऊच्चे हैं। कितनी अच्छी हवा लगती होगी यार यहाँ पर। मै भी जाऊंगा यार घूमने पेड़-पौधों के साइड ।

बड़े अच्छी लग रही है ये अकेली खड़ी है यहाँ प इसके पार और कोई बाइक नहीं है।

इसमें लाइटें जाली मेज टेबल और लोग बाग़ खाना खाने भी आते है लगता है इसमें अच्छा --

और इसका गेट भी काफी अच्छा लग रहा है और इसके पास यार लाइट भी खड़ी है यार छह सात लाइटो की एक एक ही लाइट है।

अरे कितनी अच्छी-अच्छी लाइट होंगी यार।

यार कितनी अच्छी सजावट हो रही है यार --

कितनी अच्छी जितनी अच्छी सजावट इस पर हो रही है ना --

कितने अच्छे डिजाइन से लगे हुए हैं यार ये गिलास लग रहा है रसोई में रखे हो।

और कितना अच्छा लग रहा है जब सूरज छिप रहा है तो ये फोटो कितना अच्छा लग रहा है यार।

यार ये तो लफटन है।

हमारे यहां पे भी लग रही है देख के पार्क है।

यार ये तो काफी बड़ी बिल्डिंग बन रही है यार।

ट्रैनिंग दे रहा है वो कि ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ।

और इसके ऊपर तो इशा मशी का बोला हुआ है निशानी --